यहां पर पानी की बोतले पड़ी हैं।

यह एक टोल प्लाजा का चित्र है जहां पर--

ऊपर जो छत लगी हुई है वहां पर लेन जीरो टू जीरो थ्री फोर जीरो फोर लिखा हुआ है।

जोकि बहुत ही सुंदर लग रही है नदी के पास ही एक पेड़ है जोकि हरे रंग की पत्तियों से भरा हुआ हैं।

उन कुर्सियों का रंग काला है। यह दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा है।

यहां पर एक व्यक्ति जिसने नीले रंग की टी शर्ट पहनी है वह नाव चलाने वाला है।

यहां पर ऊपर एक लाइट भी जग रही है यहां पर--

यह एक पार्क है इस पार्क में बच्चे जंपिंग वाला झूला ले रहे हैं।

इन व्यक्तियों में कुछ औरतें है और कुछ आदमी है जोकि इस मेडिकल हेल्थ कैंप को प्रमोट कर रहे हैं।

यह एक खेत का दृश्य है और यहां पर हरे रंग की फसल है जो कि बहुत ही--